इस तस्वीर में नजर अ रहिया है की यहा सामने की तरफ एक छोटा सा घर नजर आ रहिया है और चारो और हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है।

यहाँ गाड़ी दिखाई दे रही है जहा पे सर्विस आधुनिक तकनीक उपयोग कर उनमे साफ सफाई और अलग अलग --

तस्वीर नजर आ रही है सायद किसी कैफे की यहाँ रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है जहा पर अच्छी टेबल और कुर्सिया पड़ी है नजर आ रही है।

व्यक्ति भी बेठे दिखाय दे रहे है ओर उस रोड पर तिरंगा झंडा लगा भी दिखाय दे रहा है।

और सामने की तरफ एक पोस्टर लगा रखा है राजस्थान मोटर वर्क शॉप का जहा पर गाडियो की सर्विस का कार्य हो रहा है।